यहाँ सनशाइन पब्लिक स्कूल है इसमे एक कार लगा हुआ है | एक बस लगा हुआ है दो मोटरसाइकिल है |

मैम ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है बच्चा सब बैठे हुए हैं।

देखने में बहुत अच्छा लग रहा है आसमान दिख रहा है पेड़-पौधा दिख रहा है तार दिख रहा है।

फिटनेस फाउंडर जी.वाई.एम. लिखा हुआ है।